एक सामने लंबी सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर वाहन चल रहे कुछ गाड़ियां कुछ बाइक भी चल रही है।

उस गेट के सामने एक गढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही है।

पुलिस थाने में एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

लग रहा है वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर एवं मनोरम लग रहा है।

नर्सरी के सामने एक चैप्टर चिप गया है उसपर नर्सरी मे आपका हार्दिक अभिनन्दन है नाम लिखा गया है।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

और इसमें ग्रीन रंग के दरी बिछाए दिखाई दे रहे हैं।

ट्रॉफी भी रखी गई है उस मंच पर एक पुरुष--

कुछ बाइक कुछ स्कूटी कुछ ऑटो भी खड़े --

सामने एक हॉल दिखाई दे रहा है।

सामने एक मोटरसाइकिल की दुकान दिखाई दे रही है फोटो नाम लिखा हुआ --